ये जिम सेंटर में रेसिंग वाली मशीनें होती हैं।

यह लोगों के दिल और दिमाग पर जाकर असर करती है यह बहुत नुकसानदायक --

ये आलू के भरे पराठे तेल में तलकर --

ये शादी हवन है। काफी अच्छी डेकोरेट हुई हुई इसकी।

जैसे हमें इसमें देखने को मिल रहा है कई साइज़ होते हैं इसके अंदर जैसे छोटा साइज़ बड़ा साइज़ और गोल चकोर मतलब काफ़ी तरह के और रंगीन काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं ये।

ये काटता भी बहुत ज़्यादा ही बुरा है और ये किसी के अगर एक बार पीछे पड़ जाए तो उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ता।

जहाँ पर चीज रखी है हो वहाँ पर ही उसका प्राइस चिपका दिया जाता है वहाँ मोल भाव करने का कोई चांस नहीं होता और यह वहाँ पर हर चीज हर सामान हर फैसिलिटी मिलती है सब --